ये सारे लोग इतने सारे इतने सारे लोग आदमी हवन कोई अम्म गिट्टी लेके जाता ह कोई छड़ ले जात हवे।